वीडियो में एक लड़का और एक लड़की है लड़के ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है लड़की ने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

लड़कियो ने रंगोली में ग्रीन कलर पिंक कलर ब्लू कलर और व्हाइट कलर का यूज़ किया हुआ है कलर धुनें में पड़े हुए हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक फ्रूट की शॉप दिखाई दे रही है ।

इसमें मुझे एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है जिसने रेड और ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना है और ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारी एक्सरसाइज की मशीन पड़ी हुई है ।

अ साइड में मुझे कुछ लकड़ियों की ढ़ेर दिखाई दे रहे हैं जो की पेड़ो से काटी गयी है ।

यहाँ एक बोरे में दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर येलो बैनर में इनका प्राइस लिखा हुआ है।